तथा बाहर की ओर एक बाईक तथा साइकिल पार्क हैं।

एक फिजिक्स इलेवेंथ टूवेल्थ नीट एंड आई_आई_टी-जे_ई के पोस्टर लगे हुए है बगल में सी मंत्रा--

दीवार पे बहुत सारी पिक्चर्स बनी हुई है शायद भगवान की प्रतिमा है।

पटरी से एक रेल गुजर रही है साइड में बहुत सारे व्यक्ति बैंठे हुए हैं।

एक पेट्रोलपंप है जहां डीज़ल और पेट्रोल के टैंक अलग-अलग लगे हुए हैं।

यहाँ डिसील और पेट्रोल के पंप अलग अलग टेंट लगाए गए सामने से रोड निकला हुआ है तथा अगल बगल में पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

आस पास एक अबिनिशामक यन्त्र दिवार के किनारे लगा हुआ हैं तथा ऊपर लाइटें लगी हुई हैं।

रेल के ऊपर सामान लगेज अमर पाली एक्सप्रेस लिखा हुआ है |

यह एक ग्राउड है जिसके किनारे पर एक बिल्डिग बनी हुई है | बिल्डिग के सामने एक ट्रेक्टर खड़ा है तथा अगल बगल में औरते खड़ी हुई है | सामने एक रोड निकला हुआ है | रोड --